सहायता से घासो की सफाई की जाती है।

कई प्रकार के लोहे के सामान रखी हुए है यहां बहुत बहुत बड़ी मात्रा में लोहे की सामग्री--

और कुछ व्यक्ति खड़े हैं। नीचे पोटीपो बोहोत ही सुंदर दे ईंटें से बनी हुई --

यह अ दृश्य एक अम मार्के --

सामने एक बड़ी सी कछुवा बैठी हुई है जिसकी उ उ ऊपर कि पीठ बहुत बड़ी और विशालमय है।

यहाँ एक अ पिज पिंजड़ा है। पिंजड़े के अंदर अ कई अ चिड़िया बैठी हुई हैं।

जो रंग-बिरंगी है बहुत ही सुन्दर दिख रही है और बहुत ही आकर्ष्क है यहाँ पिंजड़े में चिड़िया --

जहाँ कई व्यक्ति आना-जाना कर रहे हैं यहाँ सामने एक व्यक्ति अअं ढक्कन खोले हुए --

उसके बगल मे कई व्यक्ति और एक महिला खड़ी है ।

यहां मम गेट लगी हुई है और दो तरफ से ऐऐ बब लाल रंग की बोर्ड भी लगी हुई है।

और नई- नई लगई गयी है। गेट की डिज़ाइन बहुत ही सुन्दर और आकर्सक है। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर है।

सामने एक पुतला खड़ा है पुतले मे टी-शर्ट कपड़े पहनाए हुए है ।

जिसमे कुछ मकान धसे और टूटे हुए है तो कुछ मकान ठीक ठाक दिखाई प्रतीत होता है और --

जो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है।